नगाड़े स्टैंड पर रखी हुई है।

उसके पीछे एक बड़ा सा एरोप्लेन खड़ा है।

और साइड में काउंटर पर बी_पी चेक करने की मशीन रखी हुई है।

और सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है।

सामने भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है।

सामने दो ढोल रखे हुए हैं।

रेड कलर के हैं और सामने एक बुलट खड़ी हुई है।

और सामने कुछ ढोल रखे हुए हैं जिनका कलर रेड है।

और यहां पर बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

बगल में ब्लू कलर की शर्ट पहने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

सामने बहुत सारी बकरियां हैं।

उसके सिर में तीन चिमटियां लगी हुई है।

बोतल के पा पीले कलर की टी शर्ट में एक लड़की है।

और सामने कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर दैनिक जागरण लिखा हुआ है ब्लैक कलर से।

नीचे वाले बोर्ड पर रेड कलर से रतिराम जी ज्वैलर्स लिखा हुआ है।

और नीचे बहोत सारे जेंट्स व महिलाएं हैं।

और दीवार का कलर रेड है।

कुर्सियों के सामने एक बड़ा सा काउंटर है।

और साइड में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

एक पाइप टंगा हुआ है रेड कलर का।

जनरेटर का कलर पीला है।

जिसमें रेड कलर से सिटी सेंटर सैलून लिखा हुआ है।

साइड में रेड कलर की बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं।

वह अपने हाथ में एक फोन चला रहा है।